यह एक बस स्टैंड है यहाँ पर बहुत सारी बस खड़ी हुई हैं और उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो की क्रीम कलर की है नीचे एक गेट लगा हुआ है एक खिड़की है।

चर्च के सामने एक पेड़ लगा हुआ है चर्च के चार खिड़कियाँ हैं और एक बहुत बड़ा गेट नजर आ रहा है।

यहाँ पर एक ग्राउंड नजर आ रहा है ग्राउंड के अंदर बकरियां घास खा रही है यहाँ पर एक पाइप नजर आ रहा है आस पास बहुत सारे पेड़ ही --